लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक मा--

दिख रही है इसके पास एक पानी का जग और एक ग्लास दिखाई दे रहा--

कुछ बहोत सारे लोग खड़े दिखाई--

स्टीकर दिख बने दिखाई दे रहे हैं लड़की के पीठ पर--

रखी दिखाई दे रही है कुर्सी का कलर ब्राउन कलर दिख रहा है।

यहां एक शॉप पर एक कांच का काउंटर --

यहां ब्लू कलर के बोर्ड पे डॉक्टर राकेश गुप्ता डॉट डॉट लिखा हुआ दिखाई दे रहा--

यहां पर एक स्कूल में कुछ सर चेयर पर--